यह बहुत ही सुंदर लग रहे है यहाँ लाइन से दुकान है और रात का समय है और लाइटे जल रही है।

बहुत सुंदर लग रहा है। आइट साइड बहुत सारे पेड़ रहे है खजूर भी दिख रही है। आगे घर दिखाई दे रहा है।

यहा बहुत बड़ा खेत है कुछ जगह मे कुछ नहीं लगा हुआ है और एक तरफ कुछ लगा हुआ है।

आइट साइड रोड गए है कुछ पीछे भी घर बने हुए है बोहोत सारे घर बने हुए है और बहुत ही बड़ा मैदान है कुछ पेड़--

बहुत सारे लोग है जो मच्छियों को देख रहे है कोई ले रहा है और यहाँ बहुत सारे चद्दर सेट है उसके नीचे भी बैठे हुए है और साइडो में भी दुकाने--

यहा बहुत ही बडा हॉल है यहा बहुत ही बड़ा हॉल है इसमे बहुत सारी चैअर रखी हुई है कुछ लोग बैठे हुए है कुछ खड़े हुए है।